मुझे यहां पर एक सी_बी_आई बैंक का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर एक युवक साइकिल से गुजर रहा है और दो औरते भी गुजर रही है।

सारा सामान रखा हुआ है यहां पर लाइट भी लगी हुई है और एक बल्ब लगा हुआ है।

मुझे यहां पर एक चर्च का दृश्य दिखाई दे रहा है जो की बहुत बड़ा है।

अंदर जाल में एक आदमी को खड़ा कर रखा है।

यहां पर एक खंभा भी लगा हुआ है और दो बड़े बड़े घर भी लगे हुए हैं।

मुझे इस फोटो में एक पानी के बहते हुए फव्वारे दिख रहे हैं और बहुत सारे गमले रखे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर एक छोटी चेयर भी रखी हुई है और बहुत सारी साइकिले भी खड़ी हुई।

मुझे यहां पर एक कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमे की एक काउंटर लगा हुआ है और उसके ऊपर एक कम्प्यूटर रखा हुआ है।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

यहां पर बहोत सारे हरे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं।

मुझे यहां पर एक कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें की बहुत सारे गुब्बारे लगाए गए हैं।

मुझे यहां पर एक कॉलोनी का दृश्य दिख रहा है जिसके नीचे एक कार खड़ी हुई है और एक लाल रंग की कार भी खड़ी हुई है।

यहां पर बहुत सारी हरी भरी फुलवाड़ी लगाई गई है।

मुझे यहां पर एक अस्तबल का नजारा दिख रहा है जिसमें की एक फुटबॉल पड़ी हुई है और दो गधे खड़े हुए हैं।

मुझे यहां पर एक घर का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसके बाहर बहुत सारे वाहन खड़े हुए हैं।

तीन कारें भी खड़ी हुई हैं यहां पर बहोत सारे छोटे छोटे गमले भी रखे हुए हैं।

के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि काम कर रहा है।

यहां पर बहोत सारे आदमी खड़े हुए हैं और यहां पर बहोत सारी मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

इसमें की बहुत सारे एक दुकान के बाहर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

यहां पर एक ट्रक भी खड़ा हुआ है और कुछ लोग पेट्रोल भरवाने का काम कर रहे हैं।

के बाहर एक मेट्रो गुजर रही है और इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

जिसके बाहर बहुत सारे तार भी लगे हुए हैं यहां पर एक काले रंग की टंकी भी रखी हुई है।

और बहुत सारे हरे पेड़ पौधे भी लगे हुए--

यहाँ पर एक बाल्टी भी रखी हुई है और इसके पीछे बहुत बड़ा घर बना हुआ है।

और यहां पर प्रॉफिट कमाते हैं।

इसमें समय चल रहा है और पीछे बहुत सारी सजावटें की गई हैं।

और यहां पे एक शीशा भी लगा हुआ है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।

और यहां पर खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है सूखा हुआ बिल--

यहां पर एक काले रंग का बड़ा पर्दा दिख रहा है

यहां पर कुछ बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं।

मुझे यहां पर एक अलमारी का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक नीले रंग का पाइप भी रखा हुआ है और इसकी दीवारों पर सीमेंट लगा हुआ है।

बाहर बहोत सारी पीले रंग की गाड़ियां खड़ी हुई है और दो आदमी इधर उधर घूम रहे है।

और इनसे एक बुढ़िया औरत बत बाते कर रही है।

जहा पर यहां पर बैग सुधारे सुधारे जाते --

नजारा में बहुत अच्छा लग रहा--

यहां पर एक जंगला भी लगा हुआ और यहां पर तीन नीले रंग की कुर्सियां भी रखी हुई है और एक बड़ी मेज रखी --

मुझे यहां पर एक पार्क का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें कि बहुत सारे खेलने के साधन लगाए हुए हैं।